जिसमें एक आस-पास बहोत सारे पड़े पौधे हैं कुछ रोड भी हैं बहोत ही खाली सा जगह दिख रहा --

यहाँ पे एक एरिया है उस एरिया में एक बहुत ही सुन्दर-सी बिल्डिंग दिख रही है। जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से सज़ाया गया है डिफरेंट कलर की लाइटिंग्स लगाई हुई हैं।

हर बहोत ही डिफ़ेरेन्ट डिफ़ेरेन्ट कलर की ये कुर्तीया हैं। कुछ ग्रीन है कुछ येलो है कुछ रेड है। बहोत ही डिफ़ेरेन्ट डिफ़ेरेन्ट कलर की हैं जहाँ पे लाइट लगी हुई हैं टाइल्स लगे हुए हैं। लाइट बहोत चमक --

यहाँ पे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसमें बहोत सारे लोग काम कर रहे हैं। कुछ पाइप्स टाइप के भी नज़र आ रहे हैं।